इसमें दरवाजा है। इसमें लिखा है एसटीयूजीजी --

सामने एक गाड़ी जा रही है --

इधर एक बहुत बड़ा टेंट लगा है। टेंट के पार बहुत सारे लोग बैठे है उसमे उसके ऊपर मूर्ति जैसे रखी है।

इसमें लिखा है ऊपर से बोर्ड जैसा दिख रहा है बाल दाड़ी लिखा है इसमें इधर बहुत बड़ी टूटी लगे है नल के ऊपर नीला - नीला कुछ लिख --